हुआ है पानी से भरा हुआ खेत है और यह पेड़ भी लगा हुआ है।

जो इस गड्ढे की खुदाई इस मशीन के द्वारा करवा रहे हैं।

बोहोत ही सुंदर एक लड़के और लड़की की पेंटिंग बना रहा है जो बोहोत ही सुंदर दिख रही है पेंटिंग --

यहाँ पर भगवान जी निवास करते है।